इस एमगे में एक बुलदिङ दिख रही है जिसमें पेला और उपेर में आसमान दिखाई दे रहा है उसके बाजू में ए ]